यहां पे दीवाल का कलर येलो है।

यहां पे ढेर सारे कैरेट भी है कुछ कैरेट के कलर ब्लू है और कुछ कैरेट ग्रीन है।

यहां पे नीचे के रैक में चद्दर भी रखा हुआ है यहां पे स्लैब का कलर ब्लैक और दीवाल का कलर व्हाइट है।

यहाँ पे ऊपर दीवाल में चार पांच लाइटे भी लगाई हुई है।

नीचे में ड्रोवर बना हुआ है जो की पिंक कलर का बना हुआ है।

दाएं साइड में ऊपर में अवन भी लगा हुआ है।

बांए साइड में एक छोटा सा बोट है।

यहां पर चट्टान पर काई वगैरा भी जम गया है।

दाएं साइड में एक आदमी है।

सामने के सफेद कलर के बिल्डिंग में ऊपर में आर_के फिटनेस क्लब लिखा हुआ है।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

यहां पे सामने में तीन चार स्कूटी बाइक वगैर है और सामने में दो स्कॉर्पियो भी है।

यहां पे सामने में एक बच्चा है जोकि सफेद कलर में ब्लू कलर से चेकिंग का शर्ट पहना हुआ है।

छोटे छोटे पिलर लगाए हुए हैं।

नीचे में सफेद और ब्राउन कलर का टाइल्स भी लगाया गया है।

यहां पे एक सीढ़ी भी लगाया हुआ है।

यहां पे बहुत सारे अनेको प्रकार के सामान रखे हुए हैं।

जोकि रेड कलर का है जहां पे ए टू जेड मेगा स्टोर मेन रोड रोहिणी लिखा हुआ है।

यहां पे तीन चार भगवान के पोस्टर भी हैं।

यह एक घर का दृश्य है यहां पे सामने में ढेर सारा पिलर के मदद से छत बनाया गया है।

यहां पे एक पंखा भी लगाया हुआ है।

यहां पे दाहिने साइड में नीचे में सिंगल टेकर और डबल टेकर दोनों प्रकार के रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं।

यहां पे बीच में ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है फर्श के--

ढेर सारे सोफा चेयर्स वगैरा रखे हुए हैं।

यहां पे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे घड़ी के ऊपर में रोशनदान भी बना हुआ है।

दाएं साइड में एक पेड़ भी है जिसके नीचे दो तीन बाइक लगा हुआ है।